बात करे तो इस पिक्चर मे हम देख सकते है की हमे यहा पे ग्रीन कलर का काफी बड़ा घना सा एक पोधा देखने को मिल रहा है देख देख के ठीक साइड मे देख सकते है की एक बिजली का खंबा बी--

वहा पर गत्ते वाले पैकेट मे पन्नी पॉलिथिन वाले पैकेटस भी हमे देखने को मिल रहे है वहा पे ब्लू कलर का लंबा सा स्टूल भी हमको देखने को मिल रहा है जो की काफी ऊंचा सा है सामने की तरफ एक काउंटर है व्हाइट कलर का और वहा पे--

हमे आ देख ने को मिल रहा है पूरी बाउंड्रीसी है जो की ईटों की बनाई गई है इसमे कॉलम्स और सरिये वगैरा के आ उसको डाल के रखा हुआ है सरिओं कों बांध बांध कर और हम देख पा रहे है--

देख सकते है की यहा पे हमे बहुत की प्यारा व्यू देखने को मिल रहा और सामने की तरफ हमे अ जो पीछे बॅकग्राउंड है वो पूरा ओरिजिनल कर्टेन से लगा हुआ है और ठीक हमारे पीछे ब्लू कलर का बॅकग्राउंड देखने को मिल रहा है जहा पे हमे--

कि ये जो बड़ा वाला गेट है वो तीन पार्ट्स में डीवाईड है हम देख पा रहे है उसका एक पार्ट उसको खोल दिया गया है और वहाँ पर जाने आने-आने-जाने का रस्ता है दोन्हों तरफ में --